यहाँ पे एक समुद्र है नदी है नदी के ऊपर एक सीढ़ी लगा हुआ है जहाँ तर्द होने के लिए एक आदमी ब्लू कलर के पेन्ट में और ब्लू कलर और ऑरेंज कलर के जूते में --

एक कन्स्ट्रक्शन का काम चल रहा है जिसमे बहुत सारे आदमिया है लेबर है एक चप्पल है एक घोड़ा है।

एक आइअर्न का छर है एक आदमी माथा पे मुरेठहा बांध के गिट्टी को ला रहा है एक इंजीनियर है जो कागज हाथ मे पकड़े हुए है और जुत्ता पहने के आया --

यहा पे एक सोप है सोप का नाम है नयन बार्बर सोप सैलून जो केस काटने वाला सैलून है और बगल में कुछ इटे रखे हुई है कुछ घास घुस है ग्राउंड खाली हैं।

यहा पे एक ब्लेक कलर का कार हे सीसे के पीछे बहुत सारे मंदिर हे मंदिर के पैर पौधा ऐ के और यलो कलर में और अ बस अ हैजो वाईट कलर में हे कुछ ब्लू में है।